इस फोटो में सामने एक कार खड़ी हुई है।

और कार के पास में ही कुछ लाइटे खड़ी हुई हैं।

इस फोटो में एक आदमी टिपलर को धोता हुआ दिखाई दे रहा है।

इसके आगे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है।

पीछे कि तरफ कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं जिनके पीछे कुछ पेड़ खड़े हुए हैं।

एक मजदूर के पीछे एक डंडा रखा हुआ है।

सामने एक पीछे घर दिख रहा है बहुत बड़ा जो की सफेद रंग का है।

सामने बड़े बड़े गिफ्ट के बॉक्स रखे हुए हैं।

जो कि छोटे छोटे बैनरों की है।

जिसके नीचे रंग हो रखा है वो नीला रंग है।

नीचे की तरफ कुछ बजरी बिछी हुई है।

जिसमें अलग अलग चित्र बने हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक रोड दिखाई दे रही--

और सामने कुछ सोफे पड़े हुए हैं जो की सफेद रंग के हैं।

इसमें नीली चौ चौखट और दरवाजे लगे हुए हैं।

फोटो में सामने एक कार पार्किंग दिखाई गई है जो बिल्डिंग के नीचे रहती है।

सामने एक फायर बिग्रेड का रोलर लगा हुआ है।

और कुछ चेकअप की मशीन रखी हुई है।

सामने कुछ रैक रखी हुई है जिन पर शीशा लगा हुआ है।

दुकान पर एक पोस्टर लेज का चिपका हुआ है।

ऊपर की तरफ बड़ी बड़ी लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं कुछ झुमर लटके हुए हैं।

फोटो में एक बड़ा सा बेडरूम दिखाया गया है।

कुछ लाल रंग के हैं और कुछ सफेद रंग के हैं।

कार मैकेनिक काम करते हैं सामने कुछ हथोड़ा पड़ा हुआ है।

ऊपर एक पतंजलि का बोर्ड लगा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक चाट भंडार खड़ा हुआ है।

और डेस्क के ऊपर कुछ बैग रखे हुए हैं।

और सारी डेस्कों पर लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

इसमें कुछ महिलाएं नहा रही है और कुछ आदमी नहा रहे हैं।

फोटो में सामने कुछ लड़कियां नाचते हुए दिखाई दे रही हैं।

कीसी तरफ से कुछ चानना आता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

और एक फोन रखा हुआ है और एक कप रखा हुआ है।

बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं पीछे की तरफ कुछ बिल्डिंगे खड़ी हुई हैं।

और मैदान के बीच में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

दोनों तरफ कुछ लोहे के तख्ते दिखाई दे रहे हैं।

स्टेज पर एक गमला रखा हुआ है जिसके अंदर गुलाबी रंग के फूल हैं।

नीचे एक बड़ी सी कुर्सी पड़ी हुई है जोकि लाल रंग की है।

इस फोटो में सामने कुछ पाइप लाइनों की दुकान दिख रही है।

सामने एक बड़ी सी घड़ी दिख रही है और एक झूमर लटका हुआ है।

सामने गोल्डन कलर के दो दरवाजे दिख रहे हैं।

फोटो में सामने कुछ भैंसे जाती हुई दिखाई दे रही हैं।